ये एक मुर्गी पालने का जगह है।

ये एक फ्रूट की दुकान है फ्रूट की दुकान पर तरह तरह का फ्रूट पड़ा हुआ है।

बहोत ही रंग बिरंगा और सुंदर ताजा फ्रूट पड़ा हुआ है।

ये एक नर्सरी है नर्सरी को--

यह एक कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर तरह तरह की कॉफ़ी बनाई जाती है।

मेज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं।

बहुत सारे वृक्ष भी नजर आ रहे हैं।

ये एक नेशनल हाईवे है यहां पर बहोत जा--